इसमें एक फिल्डर कैमरे के एकदम सामने है साथ में एक मोबाइल टावर दिख रहा है।

इसकी मज मीनार बहुत ऊंची है।

उसके ऊपर चंद्रमा बनाया गया है। बगल में चार लाउडस्पीकर भी लगा है।

एक कारीगर अपने पूरे पोशाक पहनकर खड़ा है।

प्रार्थना कर रहे हैं और उनके साथ खड़े लोग जो कि ईसाईं धर्म के हैं।

व पादरी जी के पीछे क्रॉस दिख रहा है।

देखने से लग रहा है यहां कोई व्यक् --

देखने से ये लग रहा है राज्य स्वास्थ्य एजहां पे काफी सारी भीड़ लग रही दिख रही हैवं परिवार कल्याण का बोर्ड लगा हुआ है।

इस मंडप पे आर्टिफिशियल फूलों को से सजाया गया है इसमें चार पाए हैं और एक मीनार बनी है पीछे एक दीवाल पर एक ए_सी भी लगा हुआ है।

अम चर्च में रंगीन भी रंग बिरंगे गुब्बारे लगे हैं।